देखकर हम यह कह सकते हैं कि यह एक खूब सुंदर संस्थान है यहां पर लोगों का काम किया जाता है यहां पर बहुत ही मात्राऐं में पंखे भी लगे हुए हैं यहां पर काफी अनगिनत मात्राऐं में दरवाजे भी हैं।

पिक्चर को देखकर हम यह कह सकते हैं के यह एक कंप्यूटर सिस्टम है यहां पर काफी ज्यादा मात्रा में स्टूडेंट बच्चे लोग पढ़ने के लिए आए हुए हैं जिनका चप्पल यहां पर एक लाइन से लगाकर रखा गया है।

पिक्चर को देख कर हम ये बता सकते है की यह एक कम्पूटर सिस्टम है।

इस घर का कलर पीले रंग का है और काफी मात्रायें में पोस्टर दिखाई दे रहा है यहाॅं पर एक बाईक भी खड़ी हो चुकी है।

यह देख कर हम कह सकते है की ये एक कंप्यूटर क्लास है जो की बहार को बहुत जगह मथुराय पोस्टर लगी गयी है।

एह होटल का कलर सफ़ेद रंग का है कुछ पंखा चल रहा है कुछ पंखा रुका हुवा है येह फ़िलहाल यहा पर कोई भी नजर नहीं आ रहा है इसका कलर सफ़ेद होने के कारन खाफी माहौल शांत नजर आ रहा हैं।